यह रोड पर का व्यू है।

यह मॉल का व्यू है।

मॉल में बहुत सारे कपड़े हैं।

कबारा गाड़ी खराब हो गया है।

लाल कलर का कुछ पर्दा टाइप का है।

ऊपर लाइट है।

और यहां पर काफी सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पर स्टूडेंट।

ऑरेंज कलर का दरवाजा है।

यहां पे चेयर भी लगा हुआ है।

और एक बगल में ठेले पर।

मार्क्स भी का दुकान है।

यहां पर घर के आगे।

स्टेशन का सीढ़ी दिख रहा है।

बाइक का आईना दिख रहा है।

यह स्कूल का।

बेंच है जिसमें वाइट बोर्ड।

का काम कर रहे हैं।

नीचे में ग्रीन कलर का लाइट है।

और ऊपर में ब्लू कलर का।

यहां पर लेडीज लोग।

यह एक दुकान है जिसका नाम वेदांता --

एक आदमी बाहर के साइड खड़े हुए हैं।

बगीचा का तस्वीर है।

कुछ चीज है।

यहां कमरे का अंदर का व्यू है।

और कुर्सी टेबल।

पलंग पर वाइट कलर का।

बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

खूबसूरत नजारा है।

इस व्यू में मरकरी।

लाइट लगाया गया है ।

यहां पर काफी सारे लोग।

यहां पर काफी सारे।

चेयर एंड टेबल्स लगे हुए हैं।

यहां एक बाजार है।

दिख रहा है।

यहां पर एक तालाब है।

बहुत सारे घर हैं।

नीचे है।

टेंपों में चढ़ने वाले हैं।

एक कार को बना रहे हैं जो रेड कलर का है।

और एक वाइट कलर का स्कूटी लगा हुआ है।

और एक गार्ड अंकल गेट के पास खड़े हैं।

विंडो है और बाइक लगे हुए हैं।

पिंक डांस स्टूडियो करके है।

इस तस्वीर में एक।

चाय का दुकान है।

जहां पर बाहर में।

एक अंकल पानी पी रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे गीतार।

यह एक स्विमिंग पूल है जिनमें कुछ लोग।

हार्दिक अभिनंदन करता है।

इस तस्वीर में एक गाड़ी है।

वेलकम करके लिखा हुआ है द स्मार्ट शॉप ।

कुछ फूल भी दिख रहे हैं।